वो खंभे पर बोर्ड्स लगे हुए हैं।

बहुत खुला हरा भरा मैदान नज़र आ रहा है।

ऊपर तीन चार बिजली की तारे भी दिख रहे हैं।

वह पता नहीं किस चीज की है उसके पीछे बड़ा सा वाहन भी दिख रहा है।

आ रहा है पीछे हरे भरे बुशेस भी दिख रहे हैं।

एक बिल्डिंग सी बनी हुई है और एक बड़ा सा ट्रक नजर आ रहा है कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

इसके बाहर बहोत एक बहोत ही शानदार गार्डन है।

यहां एक बहोत बड़ी सफेद रंग की बिल्डिंग नजर आ रही है जिसके बाहर--

सामने कुछ बर्तन भी दिखाई दे रहे हैं और दीवार पर बोर्ड भी लगा हुआ है।

इसमें तीन लोग रिसेप्शन पर बैठे हैं और एक आदमी पगड़ी पहने हुए--

यह एक मार्केट का सीन है जिसमें बहोत सी दुकाने हैं।

यह सीन में बिल्डिंग में बहुत से लोग अस्पताल की बिल्डिंग में--

बिल्डिंग व्हाइट कलर की है आस पास पेड़ हैं बहुत ही सफ़ाई दिख रही है।